जिसने पिंक कलर का शर्ट ब्लू कलर का पैंट पहना है उसके पास में नदी दिख रही है पीछे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

लड़का सायद अ फोटो निकालने के लिए खड़ा है उसने हाथ में घड़ी पहना है।